इस तस्वीर में यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है जिसमें काफी व्यक्ति अपनी गाड़ियों में पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं और इसमें एक ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है।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

और इसी पिक्चर में काफी पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें एक सामने एक मेज रखी हुई है जिसमें एक बोर्ड लगा हुआ है। ये आई नेत्र वाला है और इसमें सीढ़ियों के बराबर में एक गेट बना हुआ है जालीदार।

और बाहर ग्राउंड में कुछ हरे घास उगी हुई है और छोटे पौधे और बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं और ऊपर बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें एक लेडिस और एक आदमी खड़े दिखाई दे रहे है और तस्वीर के राइट साइड में एक गाड़ी में छोटा बच्चा बैठा हुआ है छोटे और बच्चे के आसपास कई आदमी खड़े हुए हैं।

जिसमे एक वैन दिख रही है जिसकी खिड़की खुली हुई है।

और इन मशीनों के ऊपर जो बटन लगे हुए हैं बड़े रंगीन रंगीन बटन दिखाई दे रहे डिब्बे से टाइप के।

पिक्चर में हम एक ऑफिस का सेंटर देख रहे हैं जिसपे एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस व्यक्ति के काउंटर हैं जिसके सामने सा ऊपर बोतलें रखी इसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें चार्ज लगा हुआ है और इसकी मेज पे कुछ बुक एक रजिस्टर भी दिखाई दे रहा है।

और इसकी बलग बगल में एक जैकेट टंग रही है और नीचे कुछ सामान रखा है और ऊपर लाइटे लग रही है।